काफी सारी चिप्स कुरकुरे हर अलग --

पैकेट -अयकीट में बहुत सारे --

देख सकते हैं। मुझे समझ में न नई आ रहा है कि ये क्या है?

और सुविधा यहाँ लिखा है डब्लू डब्लू जे.एन.सी. जे.एन.सी. क्लिनिक --

यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे आपको दवा ओवा अच्छी से --

यहाँ पे देख सकते हैं एक अंकल जी है। यहाँ पे काफी एरोप्लेन के पास है। जिसपे इंडिगो लिखा हुआ है। वहां पे एक आंटी जी हैं। वहाँ पे एक बच्चे को लेके खड़ी हुई हैं।

दिखाई दे रहा है। न्यू मातेश्वरी सौंदर्य प्रतारणा केंद्र दिखाई दे रहा है। वहाँ पे औरतें देखिये समान ले रही हैं। मातेश्वरी है मोबाइल सर्विस सेंटर है यहाँ पे।

''वहाँ पे कुछ कर रहे होंगे लोग आई डोंट नो बट --''

जेंटलमेन लोग भाई खड़े हुए हैं।

इधर काफी सारे पेड़-पौधे है। काफी हरियाली --

देखने में तो काफी बड़ा ग्राउंड लगता है। साइड से देखिए काफी अच्छी हरियाली भी है अच्छी लग रही है।